इसमे मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ बोहोत ही खूबसूरत गेंदे के पौधे लगे हुए है और बोहोत ही सुंदर फूल है इसमे जो की रेड और येल्लो कलर के है।

दो पेड़ दिखाई दे रहा है और मुझे झूला झूलता हुआ दो बच्चा नजर आ रहा है ।

और मुझे यहां पर रेड कलर की कुर्सी नजर आ रही हैयह एक पाठशाला कार्यक्रम है ।